टेबल पर स्क्रीन कीबोर्ड और माउस रखी हुई है।

महेंद्रा कंपनी की है।

ऊपर में पंखे और लाइट जल रही।

दीवार पर ट्रक ड्राइविंग स्कूल की पीले कलर की एडवर्टाइजमेंट की हुई।

मार्बल सफेद कलर की है जिसमें रंग बिरंगे पेटर्न्स बने हुए हैं।

यह पहाड़ में किसी बड़े छेद की दृश्य--

यहां पर बहुत सारे लोग मसीनों से एक्सरसाइज कर रहे।

दीवार लाल और काले कलर की है।

ऊपर में बहुत सारी लाइटिंग्स भी की हुई है।

पंडित जी केसरी कलर का कपड़ा पहने--

यह एक मैदान का चित्र--

एक एंट्रेंस है घर की।

जो सिल्वर कलर के है।

क्योंकि पुलिस के है और जज ये सब बैठे हुए--

बहोत सारे लोग उसकी भाषण को सुन रहे हैं।

बैठने के लिए बहोत सारी कुर्सियां भी लगाई हुई है।

यह चित्र एक नये गाड़ी के दुकान की--

यह दृश्य एक स्कूल की लग रही है।

पेट्रोल भरने की मशीन है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

इधर पेट्रोल पंप का ऑफिस है।

उसके बगल में एक लाल कलर की घर है बगल में कुशल बीज भंडार की एडवरटाइजमेंट की पोस्टर भी लगी हुई है।

पीछे में नीले कलर के दीवार की बहोत सारी मार्बल प्लेट की हुई--

तालाब भी दिखाई दे रहा--

यहां पे कुछ टायर रखे हुए हैं।